इस फोटो में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जिसमें बर्फ दिखाई दे रही है और साथ में देवदार के--

इस फोटो में एक ग्राउंड नजर आ रहा है जिसका छायाचित्र रात के समय में लिया गया है।

और बहुत सारी चीजें दिखाई दे रहे हैं रेलगाड़ी चेयर टायर और भी बोहोत सारी चीजें छत पे ब्लैक टंकी पीछे छत के ऊपर दिखाई दे रही है एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ती खड़े होकर शायद इन सभी को किसी विषय के बारे में अवगत अं अवगत करवा रहे हैं और एक व्यक्ती--

यह दोनों व्यक्ति एक पुस्तक की दुकान में बैठे हुए हैं।